जैसा कि मैं यह देख पा रही हूं यह एक किराने की दुकान--

जैसा कि मैं यह देख पा रही हूं।

सड़क के किनारे कई पेड़ लगे हुए हैं।